एक मोहर पर एकत्रित हो जाते हैं और मस्जिद पर नमाज का आवरण करते हैं।

यह एक सुंदर सा स्विमिंग पूल है और इसके चारों ओर हरी भरी हरियाली है एक बगीचे लगे हुए है बालकनी है और इसमें --

चप्पल जूते उतारने के लिए इन बक्से बने हुए हैं और इन बक्सों में जूते चप्पल आदि कोई भी सामान यहां पर रख सकते हैं और --